और दो बत्तखें इसमें तैर रही है जो देखने में काले रंग की है आस पास मुझे हरे भरे पेड़ पौधे और झाड़ियां भी नज़र आ--

यहां पे मुझे बहुत सारी खिड़कियां और दरवाजे दिखाई दे रहे हैं इसके सामने एक मुझे हरा भरा ग्राउंड नजर आ रहा है यहां पे कुछ लोग चल रहे हैं और बैठे हुए हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक जिम नजर आ रहा है।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

और अ बहुत सारे पत्थरों को बांध कर रखा हुआ है। यहाँ पे मुझे पोल भी दिखाई दे रहा है। आस-पास मुझे बहुत सारी झाड़ियाँ और छोटे पेड़ नज़र आ रहे हैं।

यहां पर मुझे गेट के ऊपर बहुत सारे आलू दिख रहे हैं।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

यहां पे गांव के साथ मुझे कुछ स्टेज दिख रही है और आसपास हरे भरे पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

और कुछ ते टेयर अ टेबल और चेयर्स भी नजर आ रहे--

इस तस्वीर में मुझे एक सैलून नजर आ रहा है।

जिसके बाहर है एक बोर्ड लगा है ब्लैक कलर का पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ।

यहा पे मुझे बडे बडे पेड़ भी नजर आ रहे--